जो लोग किताबों की ब्रिकी में संलग्‍न है उन्‍हें बुकसेलर्स बुकडीलर बुकपीपुल बुकमेन या बुकवीमेन कहा जाता है।

आमतौर पर इस शब्‍द का उपयोग कृर्षि वाहन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कृर्षि कार्यों को यंत्रीकृत करने के लिए शक्ति और कर्षन प्रदान करता है।

यह एक पिंजरा है पिंजरा धातु की छड़ अथवा तार का बना बसा अथवा घिरा हुआ स्‍थान है जहाँ पशु अथवा पक्षी को बंद रखा जाता है।